जो कि जिन्होंने कुछ हाथ में ले रखा हुआ है।

और इसके सामने कुछ छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और एक डॉग पड़ा हुआ है और जिम का बहुत सारा समान रखा हुआ है।

जो व्यक्ति की मूर्ति है।

और इसकर पास मर कोई महिला भी खड़ी हुई--

इस चित्र में पहाड़ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

और इसके सामने एक पन्नि टंग रही है और इसके पीछे भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

इस चित्र में कुछ बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं।

और इसके पीछे एक वॉश बेसिन और शीशा लगा हुआ है।

इस चित्र में कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

इस चित्र में कुछ बच्चे बेंच पर बैठा हुआ अपना काम कर रहे हैं।

और इसके दुकान के ठीक सामने एक बाल्टी रखी हुई है।

और इसके आस पास कुछ पेड़ लगे हुए है।

जिस पर एक लोग बैठा हुआ है और उसके एक पास खड़ा हुआ कुछ कर रहा है।